ग्रे कलर वाइट कलर की ग्रिल लगी है।

ए एक परफ्यूम की दुकान दिख रहीं हैं इस दुकान में रंग बिरंगी बोतलें रखी हुई हैं उनका रंग काला सफेद हरा है।

एक बड़ा सा बाउल रखा है पीले रंग का आस पास में पीले रंग के फूल लगे हैं।

कुछ हरे रंग के नारियल के पेड़ हैं।